बिल्डिंग के बाहर कुछ खेत है जिस खेत पे कुछ एक घांस--

जमीन में कुछ घांस जमे हुए हैं और अगल-बगल पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

किराने की दुकान है जिस दुकान में मैग्गी रस्सी इ और खाने के कुरकुरे चिप्स चायपत्ती सामान रखी हुई है।

गार्डन है जिसमे फूल लगी हुई है और नीचे घांस जमें हुए है हरे कलर --

एक मंदिर है मंदिर के बाहर गणेश जी भगवान का चित्र बना हुआ है और एक गेट लगा हुआ है।

ये एक हवा महल है जिस हवा महल में ये सफेद कलर के दीवारें हैं और अं उम्म अं और कुछ--

एक नदी है और पहाड़ भी दिख रहा है और नदी के अगल बगल घास जमे हुए है और पेड़ पौधे हरे भरे है और फूल भी है।

जग रखी हुई है एक गिलास रखा हुआ है और एक कटोरी में दही रखी हुई है।

नदी है और नदी के अगल-बगल पेड़-पौधे हरे-भरे हैं।

एक ईंटों से बना हुआ टुटा फूटा है और उसके ऊपर कुछ घास जमे हुए हैं हरे कलर का और--

अगल-बगल पेड़-पौधे हरे - भरे हैं और मैदान है जो हरा घांस जमा है।

कुछ बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे वाले उसमें कुछ बैंक है और बैंक --

बाहर गाड़िया खड़ी हुई है और कुछ स्टेच्यू भी बना हुआ है और आने जाने का रास्ता है।